एक दो लोग है लग रहा है नहाने जायेंगे। पीछे बड़ा-सा बिल्डिंग है। एक साइड फूल का पेड़ है। साइड में ग्रे और ब्लैक कलर का दिवार है।

मंदिर के आगे एक ग्रिल है जिससे की पब्लिक ग्रिल के बाहर से ही माता के दर्शन कर सके।